आसमान जो सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है और कही कही हरे पत्ते दिखाई दे रहा है और सामने पेड़ के बड़े बड़े पत्ते--

सामने एक दुकान दिख रही है इसमें बहुत रैक बनी हुई है जो पीले कलर की है और इसमें पट्टी लाल कलर की--

सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड वाइट का--

दिख रहा है और निचे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है जो सफ़ेद और ब्लैक एंड वाइट दिख रहे है और बहुत सारे --

कपडे पहने हुए है और तीनो मूर्तियोंपर गेंदे का फूल की माला जड़ी हुयी है पीछे--

पोस्टर लगे हुए हैं कुछ कंप्यूटर चल रहे हैं कुछ लड़की--

सामने एक ग्राउंड दिख रहा है जिसमे निचे जमीन टाइल्स लगे हुए है और एक गोल चक्र बना हुआ है और कुछ--

खड़ी हुई है सामने चार खंबे दिख रहे है जो नीली कलर की है और घर है।

और कही हरा और लाल कलर का दिख रहा है और सामने घर दिख रहा है जो ऊपर हरा और निचे ग्रीन --

यहाँ एक छोटी सी दुकान है जिसमे बहुत सारे रैक बने हुए है जिनमे बहुत सारा सामान--

सामने एक झरना दिख रहा है जिसका पानी ऊपर से गिर रहा है जो सफ़ेद दिख रहा है और बहुत सारे---

सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो कांच में दिख रहा है जिसके हाथ में मोबाइल है और हम्म पॉलिश लगा हुआ है।

सामान डाला हुआ है और सामने एक फर्श रखा हुआ है।

सामान रखे हुए है बिस्कुट कुरकुरे मैगी निरमा साबुन--

क्रीम कलर की है नीचे लाल कलर का पुता हुआ है और एक अलमारी रखी हुई है गेट लगा हुआ है जो लकड़ी का है और ऊप--

पानी की टंकी राखी हुई है ऊपर सफ़ेद आसमान दिख रहा--

कलर के दिख रहे हैं ऊपर नीला आसमान दिख रहा है और बाउंड्री बनी हुई है और सामने अपार्टमेंट दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो क्रीम कलर की दिख रही है जिनमे बड़े बड़े कांच लगे--

रंगीन कपडे पहने हुए है जिनके पाव में घुंगरू बंधे हुए है पीछे बड़ा सा पोस्टर लगा--

बड़ा सा हॉल दिख रहा है जिसमें निचे ग्रीन कलर के टाइल्स लगे हुए हैं और एक सोफा--